यहाँ जो है भाषण यहाँ पे चल रहा है या फिर कोई त्यारी चल रही है जिस वजह से लोग यहाँ पे उनको देख रहे है।

ये फोटो एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑफिस की फोटो है जो जो की --

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन से ली गई है सामने एक लाल कलर का कमरा नजर आ रहा है जबकि दो पटरिया सामने की तरफ नजर आ रही है।

ऑफिस नज़र आ रहा है जिसमें एक व्हाइट कलर का जो है एक बिल्डिंग नज़र आ रही है साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग चल रहे हैं एक बाइक नज़र आ रही है ।

और कुछ पानी थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है यहाँ पे और मौसम काफी साफ़ नजर आ रहा है।

जिसमे लिखा है द अचिएवेर्स लाइब्रेरी ।

ऊपर जो है काफी सारी लाइटे यहाँ पे जल रही हैं।